यहाँ पर एक पत्थर का बना हुआ हैं कमरा वहां पर झालर लगी हुई हैं गी हरी लाल पिली और उसके ऊपर लाइटे लगी हुई होंगी।

जीने से ऊपर जा कर के चैनल लगा हुआ हैं उसके अंदर मंदिर हैं बाहर में गेट बना हुआ हैं उसके ऊपर कई कलर हैंगे मंदिर के ऊपर--

यहाँ पर पार्क है गा पार्क में झूले लगे हुए है स्टैंड वाला भी झूला है फिसलने वाला झूला है लोहे का जाल भी लगा हुआ है यहां निचे से लाइन से क्यारी बनी हुई है।